है जिसमें खूब सारी लाईटें लगी हुई है और एक लकड़ी का गोला बना हुआ है। उसमें कमल का फूल लगा हुआ है घर बना हुआ है।

यह अस्पताल है | इसमें एक लेडीस मास्क लगा कर व्हाइट कलर का एक मेज है कुर्सी पड़ी हुईं हैं दो खूब सारे लोग बैठें हैं साथ मे एक जीना है पंखा है लाइट है।